आजु बाजु मे खिड़की खिड़की दिख रही है दो तीन मंजिल बिल्डिंग है।

यहां पे एक पानटेला है पानटेले को पीला अ हरा कलर दिया हुआ है आजू बाजू मे ही लोग जमे हुए है।

अ नीली कलर की पैंट पहनी है और दुका कुछ अ आदमी बस मे बैठे हुए हैं दो तीन--

दो लड़के के कपड़े रखे हुए हैं दो टावेल है ऐसे ये दुकान है।

कुछ दो-चार लड़के खेल रहे है एक-दूसरे के पीछे दौड़ रहा हैं रहे हैं आजू-बाजू में भी बड़े-बड़े पेड़ हैं।